और यहाँ पे टूल भी रखा गया है।

के हैं भी है जो यहां पे मुर्गियां नजर आ रही है।

और यहां पे जाली लगाया हुआ है।

साइड में भी और भी छत है जो वहां पे भैंसों बैलों को भी बांधा जाता है।

बहोत सारे ब्लप लगाये हुए है। में यहां के अलग अलग चीजें रखी गई है।

चेक डिपॉजिट लॉक अवेलेबल बोल कर लिखा हुआ है यहां पे--

बहुत खेत है जो खेत में कुछ पेरे हुए है और बहुत पेड़ भी हैं यहां पे दूर दूर तक।

पेड़ ही नजर आ रहे हैं और आसमान में बादल है काले धूप नजर आ रहे हैं हवाएं छुट्टी हुई है।

जो आए हुए ठहरे हुए है एक प्रिंसिपल है जो सर है जो उन्हें कुछ बता रहा हैं और यहां पे है --

और दीवाल का कलर भी वाइट है और यहां पे खाने के लिए चिप्स के कुरकुरे के भी --

यहा पर लड़का लड़कियां है जो इंजॉय कर रहे--

और यहां पे छोटे छोटे पेड़ लाए हैं पौधे--

के कपड़े डाले है। आसमान नीला नजर आ रहा है।

बहोत बड़ा गार्डन है जो यहां पे बहोत बहोत--

जो यहां पे बहोत झाड़ भी दिख रहे हैं जो सामने--

जैसे कि यहां पे अलग अलग कलर के कोट हैं के है फूल के हैं।

यहां पे है पी_ओ_पी का काम चल रहा है जो यहां पे पी_ओ_पी है और यहां पे ऊपर का काम हो गया है पी_ओ_पी का और यहां पे टी_वी का।

जो टी_वी के पीछे भी यहां पे पी_ओ_पी किया गया है वायरिंग है भी नीचे छड़े पे--

जो हमे यहाँ पे बांन रहा हैं कुछ और यहां पे गले में भी वरमाला पहनाई गइ हे।

येलो कलर के हैं व्हाइट कलर के हैं रेड कलर के हैं एक बुड्ढा है जो यहां पे --

यहां पे लिखा गया है डिपार्टमेंटऑफ आधार कार्ड ।

और यहाँ पे है है कांच सामने का।

दीवार का कलर व्हाइट है फैन चालू है यहां पे साइड में भी है।

जो यहां पे बनाने के लिए पोस्टर पे लिखा गया है।

यहां पे एक रास्ता है जाने के लिए।

बड़ी सी है और यहां पे भी है जो नीले कलर का दीवाल --

यहां पे है दुकान जो यहां पे बहोत सारे--

और यहां पीछे साइड में है येलो कलर के पर्दे हैं और यहां पे है।

टेबल और कुर्सी है बैठने के लिए और यहां पर पेन भी रखें--